एक नदी के ऊपर ब्रिज बनी हुई है जो की सीमेंट की ब्रिज है और इस ब्रिज के ऊपर एक साइकिल से एक आदमी खड़ा है।

यहाँ पे दो बच्चे दिख रहे हैं एक लेडीज है और एक जेंट्स चेयर पर बैठे है और ये सभी एन्जॉय कर रहे हैं।

ये एक सिटी सेंटर सलून है गोपालगज का ये ए_सी सलून है और यहाँ पे--

ये सरकारी द्वारा कार्य किया जाता है और यहां पे कुछ घर वगरा भी बन रही है ।

ये एक स्टेज शो हो रहा है इसमें कुछ लड़के और लड़कियां भाग लिए हैं।